कोकोडाइल भी बहुत बड़ा है दूर में पूल की ऊपर एक ब्रिज भी दिख रहा है।

वेटिंग रूम के बाहर कुछ लोग खड़ा है दूर में एक बस दिख रहा है।

इधर पे एक बुक स्टेशनरी दुकान दिख रहा है।

सामने एक फील्ड दिख रहा है फील्ड में कुछ टेंट है तीन अम्ब्रेला भी दिख रहा हैं चेयर पे एक लोग बैठे है पास में एक चेयर भी दिख रहा है आ --

पास में दो लोग खड़ा है पेंडल के भीतर में बहुत सारे लोग खड़ा है इस अनुष्ठान में बहुत सारी लोग निमंत्रित हुई है।

इधर एक क्लासरूम है क्लासरूम बहुत बड़ा है क्लासरूम में बहुत सारा हाई बेंच लो बेंच है एक बेंच पे पानी का बोतल दिख रहा है दीबाल पे एक व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड है एक --

इधर एक कोचिंग सेंटर है कोचिंग सेंटर के अंदर चेयर पे कुछ स्टूडेंट बैठे हैं नोटबुक में कुछ लिख रहा है।

इधर एक बड़ा-सा फील्ड दिख रहा है फील्ड में एक खेला चल रहा है बहुत सारे लड़का खेल रहा है फील्ड के आस-पास बहुत सारा लोग खड़ा है कुछ लोग --

दीवाल की रैक में कुछ ड्रेस का पैकेट दिख रहा है इस दुकान में बहुत लोग की भीड़ होती है।